इमेजेज में हम देख रहे हैं की यहाँ पे शायद कोई मछली मार्केट है जहाँ पे एक पाइप है बड़ा पानी का जो की दो इंसानो ने पकड़ा हुआ है।

और एक बच्चा खड़ा हुआ है सामने जो कि देख रहा है सामने बिल्कुल कोई फोटो ले रहा है उसका पीछे की तरफ हम देखेंगे आसमान नजर आ रहा है और कोई बगीचा नजर आता है ये।

इसमे हम देख रहे है की यहाँ पे बोहत सारी फिश और मछलियाँ नजर आ रही है जो की बोहत सारी है।